सामने की ओर एक भूरे रंग की मेज भी नजर आ रही है।

कई तरह के पोस्टर लगाए गए है ऊपर के हिस्से में कई सारी चीजें लटकाई गई है।

एक सफेद रंग का मेज भी दिख रहा है।

यह दृश्य एक दुकान का है जिसमें सामने की ओर की दीवार को लाल और सफेद रंग से रंग गया--

सामने की ओर एक शीशे की अलमारी भी दिख रही--

इसमें सामने की ओर लाल गुलाबी हरे और पीले रंग के फूल नजर आ रहे हैं।

दृश्यों किसी मैदान का है जिसमें सामने की ओर कुछ गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही है।

सामने की ओर कई सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

सामने की ओर एक द्वार भी दिख रहा है सामने की ओर एक हरे रंग का कूड़ेदान भी नजर आ रहा है।

सामने की ओर एक मेज में कंप्यूटर भी रखी हुई--

सामने की ओर एक काले रंग की बोर्ड में सफेद रंग की से भाव लिखा हुआ नजर आ रहा --

बाहर में एक पेंटिंग भी नजर आ रही है नीचे की ओर पलंग है जिसमें सफेद रंग की चादर बिछी हुई है।

पास की दीवार को गुलाबी रंग से रंगा गया है।

ऊपर की हिस्सों में लाइटें लगी हुई नजर आ रही है सामने की ओर कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

सामने की दीवार को शीशे से बनाया गया है आस पास कई सारे पोस्टर लगे हुए दिख रहे है।

नीचे की जमीन मिट्टी से बनी हुई नजर आ रही है।

यह दृश्य एक मस्जिद का है जिसमें सामने की और कुछ लोग नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं।

यह दृश्य किसी मार्ग का है जिसमें सामने की ओर एक दीवार में कई सारे पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे--

ब भूरे रंग से रंगा गया है सामने की ओर एक गाड़ी भी नजर आ रही है आ --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

सामने की ओर एक पत्थर की दीवार भी दिख रही--

सामने की ओर एक घर भी नजर आ रहा है।

यह दृश्य एक मालगाड़ी का है जिसमें सामने की ओर एक भूरे रंग की मालगाड़ी नजर आ रही है।

सामने की ओर पर्दे भी लगे हुए हैं।

नीचे की जमीन को हरे रंग के टाइल्स से बनाया गया--

जिसमें कई सारे फूल और लाइटें लगाई गई है।